एक बिल्डिंग के सामने चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और उसके थोड़ी दूर जाके एक गाय चर रही है और उसी के पास बड़े बड़े पेड़ है।

कटिंग की दूकान के अंदर शीशे लगे हुए हैं और पतंग का सामान पड़ा हुआ हैं।

और बिल उसकी कृपा से एक बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के बाहर कुछ गाड़ियां रखी हुई है और कुछ महिला वे खड़े हुए है और कुछ व्यक्ति अंदर जा रहे है।

टमटम के सामने से एक बस आ रही है और एक बस जा रही है उसके आस-पास पेड़ खड़े हुए है और लाइटिंग के तार भी इधर से उधर गए है।

प्रतीक की बनी हुई है उसके आस-पास पिखे अंगरक्षकों की मूर्ति बनी हुई है और मूर्तियों के ऊपर सर्प जैसी मूर्ति भी बनी हुई है।

अल्मारीओं में जूते लगे हुए हैं और रूम के बाहर कुछ आईं गाड़ियाँ रखी हुई हैं के सामने कुछ ब्यक्ति पैदल जा रहे हैं।

--के चारो तरफ मकान ही मकान बने हुए हैं मस्जिद से जाने का रास्ता मैदान से होकर जाता हैं ।

कुछ लड़कियाँ और एक लड़का स्टेज पर कुछ नाटक दिख रहे है और चारों तरफ जनसंख्या की बैठी हुई है।